अ धनिया पुदीने की चटनी दिखाई दे रही है।

और नीचे ना एक मतलब मंजी है मंजी के ऊपर ये प्लेट है प्लेट के अंदर खाणे का समान है चटनी है।

लोग दिखाई दे रहे हैं नीचे रेड कलर का और ग्रीन कलर का कारपेट भी बिछा हुआ--

इस प्ले इस फोटो में एक कढ़ाई दिख रही है जोकि ब्लैक कलर की जो लोहे की कढ़ाई होती है ना वो वाली कढ़ाई है।

इस फोटो में यहां पर चार लड़के दिखाई दे रहे हैं सामने जो है--

उस पर लिखा है मानसरोवर स्टेशनरी हमारे यहां सभी प्रकार के कॉपी पेन पेंसिल रबर कॉस्मेटिक --

कंपास एवं अन्य प्रकार के स्टेशनरी सामान उचित रेट पे मिलता है नीचे लिखा हुआ संजय चंद्र व--

ठीक है फर्श पे टाइल लगी हुई है ये क्रीम कलर की टाइल है।

ठीक है और यहां पे ऊपर पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है तीन लड़के हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ठीक है कूलर दिखाई दे रहा है और यहां पे एक इलेक्ट्रिक ऑटो है जो की वाइट कलर की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ देखो वो जागरण वाला सेटअप सारा।

और ये बस जो है ना ये ग्रीन और वाइट कलर की दिखाई दे रही है ऊपर दोनो लाल रंग के झंडे लगे हुए है पीछे देखो पेड़ है काफी सारे--

इस फोटो में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे हैं ठीक है जो लड़का है यानी कि लड़का लड़की तो क्या ये हस्बैंड वाइफ है ठिक है किसी शादी में आए हुए--

क्योकि देखो हर तरफ रोशनी है अंधेरा तो है ही नहीं ठीक है और--

ओ रखिया जो ये मुंह बंद करने के लिए होता है ये मुंह पे लगाते हैं ठीक है उसे न मुंह बन्द कर जैसे कोई डेंजरस कुत्ता हो या कुछ भी दिक्कत हो --

अब इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है ना वो एक साल का हो गया है।

गुब्बारों की डेकोलेरे डेकोरेशन में देखो ब्लू कलर के गुब्बारें हैं।

साइड में एक जी मेल आई_डी लिखी है डब्लू_डब्लू_डब्लू डॉट आई_एफ_बी एप्लायंसेज डॉट कॉम ऊपर लिखा हुआ है आशीष सैनी मोबाइल नंबर लिखा है।